इस पिक्चर में सफेद कलर का रूम है।

तरबूजा है और ढेर सारे फलों का एक फल फल है और यह फल स्टोर करने का --

आर्टिस्ट ये जैसे तबला बजाने के लिए यहाँ पे है अ पियानो बजाने के लिए है गिटार है तीन गो और तीन एक लाल है एक येलो है और एक ब्लू --

ये एक जोड़ी दार यानी लड़की का शॉप है। जिसका प्रत्येक समान का मूल्य पंद्रह रुपया यहाॅं पे लग रहा है और ये इसमें कुछ महिलाऐं समान लेती खरीदती हुई नजर आ रही हैं।

महिलाएं ये सब सिंगार करती सिंगार करती है चूड़ी बिंदी ये सब महिलाओं के लिए है झुमका है।

चार लड़कियाँ हैं और एक जेंट्स है और सभी लड़कियों ने शूट पेहना हुआ है जो की इन लोगो को डूबने से थोड़ा तैरने में आई थिंग मदद देगा आई थिंग यह सभी लोग पेहनते है नाव पर सवार --

यह एक शाम का पिक्चर हैजिसमें बस स्टैंड नजर आ रहा है यहाँ पे ढेर सारे बस लगी हुई है बसों के बगल में एक गाड़ी भी है यहाँ पे लोग नजर आ रहे है जो यह शाम हो रहा है तो ये शाम का पिक्चर है।